सामने काफी सारे आदमी बैठे हुए हैं जो कि डिनर करने में मस्त हैं।

खड़ा हुआ है ओ जिसने गेट खुले हैं।

इस चित्र में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है।

नीचे काफी दो तीन चेयर राखी हुई दिखाई दे रही है जो की काले रंग की है।

सामने हमें रूहफजे की बोतल व रस पीस के पैकेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इन पत्थर के बीच में से पानी आ रहा है।

और कुछ बर्तनों में खाना भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

और यहां प कुछ टेबल बेंच एक साथ ज्वाइंट हुई भी रखी है।

इस चित्र में काफी सारे गिलास रख के दिखाई दे रहे हैं।